एक बच्चे कि कटिंग हो रही है औए उसके उपर एक बलब जल रहे है एक लड़का यहाँ से कुर्सी मे बैठे हुए है। ये कटिंग का इंतज़ार कर रहा --

यहाँ एक कसरत कर रहे है यह एक जिम है और दो थो व्यक्ति अपनी फोटो शेयर कर रहे है मोबाइल में सेल्फी ले रहे है।